यहां पर बहुत सारी सीढ़ियां भी दिखाईं दे रहीं है।

दे रही हैं यहां पर गाड़ियां भी दिखाई--

दे रहे है यहां पर बिल्डिंग में--